इस तसवीर में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है पेट्रोल पंप में काफी लाइटें लगी हुई हैं।

एक टेबल लगी है जिसपे लैपटॉप रखा है टेलीफोन रखा है पेन रखा है कुछ कागज रखे हुए दिखाई दे रहे --

जिसके अंदर कपड़े की दुकान है जिसके अंदर एक मूर्ति लगी हुई है जिसको कपड़े पहनाए गए जिसका ब्लैक जैकेट व्हाइट टी शर्ट और --

एक टेबल पे पानी की बोतल रखी हुई है सामने दो कुर्सियां लगी है दीवार पर कुछ तस्वीरें टंगी हुई है।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

लेडीज सूट वै कुछ औरतों की तस्वीर मढ़ी हुई है दुकान के अंदर लाइट जंचती हुई दिखाई दे रही है और--

थैली मे कुछ पाइप के निप्पल रखे हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ छत्री बनाई हुई हैं जिनके अंदर उसके नीचे ख़ुर्सियां लगी हुई हैं जिसपे लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग चलते दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक डॉक्टर का घर दिखाई दे रहा जिसके बाहर डॉक्टर आर_पी गुप्ता लिखा हुआ है।

इसके बाहर कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं छोटी बच्ची दिखाई दे रही है कुछ बच्चे गाड़ी पर घूम रहे हैं।